में बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई हैं बोट्स को रंग बिरंगा कलर से पुताई किया गया है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल ब्ल्यू कलर का साफ आसमान है।

कुछ स्पार्कल लाइट्स भी लगी हुई है सामने दीवार में कुछ बर्ड्स के विंग्स भी लगे हुए हैं।

सामने पत्थरओं का एक छोटा सा आर्टीफिशियल पहाड़ बनाया गया है।

सामने एक बंदा खड़ा हुआ है और जो गेट लगा है वो येलो कलर का लोहे का गेट है।

ऊपर स्टेयर्स गई हुई है जिसमें ब्लैक कलर का मार्बल लगा हुआ है।

सामने एक माला पड़ी हुई है जोकि गेंदे के फूल की माला है जिसमें ऑरेंज कलर के फूल लगे हुए हैं।

इस इमेज में जो दृश्य दिख रहा है वह एक ग्रॉसरी शॉप है इसमें बोहोत सारे प्रकार की ग्रोसरीज रखी हुई है।

इस इमेज में एक बहुत ऊंची इमारत दिखाई दे रही है जिसका कलर वाइट कलर से है।

इस इमेज में पक्षियों की एक शॉप है इसमें सामने की ओर व्हाइट कलर के तोते लगे हैं।

इमेज में एक क्रेन दिखाई गई है जो कि येलो कलर की --

नृत्य को देखकर ऐसा लग रहा हैं कि ये जागरण चल रहा है जो की धार्मिक से रिलेटेड है।

को रेड कलर से हिंदी मे लिखा गया है जबकि ज्वेलर्स को डार्क ब्लू कलर से हिंदी में लिखा गया है।

सामने जो दुकान दिखाई दे रही है उसका नाम श्री राम राजा मेडिकल स्टोर है।

एक बगल में और दिखाएं दिखाई दे रही है इसका नाम वेदीलाला आइसक्रीम है जो की इंग्लिश में लिखा गया है।

इस इमेज में जो दिख रहा है वह एक डॉक्टर की दुकान है।

सामने एक मिनी फ्रिज भी रखा है जो वाइट कलर का दिख रहा है।

इस इमेज में एक गार्डन का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी लगी है।

सामने जो दुकान है उसका नाम अलंकार ज्वेलर्स है जो हिंदी में रेड कलर से लिखा हुआ है।

दुकान में बहुत सारा ज्वेलरी का सामान रखा हुआ है।

घर में बालकनी में ऊपर टीन सेट डाला गया है जो लोहे का है।

इस इमेज में एक स्टोर को दिखाया गया है जिसका नाम श्री शारदा स्टोर है जिसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में ब्लैक कलर्स से लिखा गया है।

नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसमें चार पंप चल रहे हैं।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

इमेज में जो दृश्य दिख रहा है वह एक मंदिर का दृश्य है।

सामने एक दो मंजिला इमारत भी दिख रही है जो की वाइट कलर की है।

लोहे की ब्लैक कलर की कुर्सियां है सामने एक मिरर लगा हुआ है।

जो की फोनपे का क्यू_आर स्कैनर दिख रहा है बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है।

वस्त्रों कि दुकान का ऑनर भी है सभी वस्त्र येलो कलर के और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं।